इन्होंने नीचे एक जूता भी पहना हुआ है।

यहां पे लोग पटरी से होते हुवे स्टेशन की तरफ जा रहें हैं।

नीचे बहुत सारे पन्नी रखे हुए हैं जैसे कि ब्लैक कलर का।

और फगुने के लिए तैयार हैं फगुने दो कलर के हैं पीला और बैंग--

और इसके पीछे एक स्टेट बॉलिंग का भी गया हुआ है आगे तक जिसमें--

यहां पे है।

यहां पर एक क्रेन बहुत बड़ा है जिसमें ड्राइवर बैठे नहीं खड़े हैं।